राइट साइड में एक मंदिर बनता हुआ दिख रहा है जिसके सामने एक --

बाहर से एक ब्लैक बोर्ड लिखी हुई है पिज़्जा बना हुआ है उसपे पिज़्जा लिखा हुआ है ।

बैठ के योगा कर रहे है कुछ लेडीज हैं बैठ के योगा कर रही है सामने की तरफ चार लेडीज दिखाई दे रही हैं।

सामान मिलते हैं यहाँ पे --

और इन झोपड़ियों के पीछे एक पेट्रोल पंप दिख रहा है पेट्रोल पंप के सामने गाड़ी खड़ी है |

इसके ऊपर हार्ट शेप में डेकोरेट किया हुआ है कुछ अ डिज़ाइन किये हुए हैं ।

और एक इस साइड में एक और बिल्डिंग दिख रही है बड़ी सी वाइट कलर में।

बाई साइड में कुछ बाइक खड़े हैं एक आदमी ऑरेंज कलर का टी-शर्ट पहना हुआ बाइक से चढ़ता हुआ दिख रहा है।

यहाँ पे एक लड़का दिखाई दे रहा है सेल्फी लेता हुआ जो --

यहाँ एक बड़ा सा फील्ड दिख रहा है फील्ड के बीच में एक पेड़ दिख रहा है पेड़ के सामने --